ये मूर्ति स्थापित है पीछे के तरफ बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे गाय छोटी सी बंधी हुई है बाछी और उसके पीछे गाड़ी दिखाई दे रही है।

बोहोत सारी जलेबियाँ रस रसदार जलेबियाँ दिखाई दे रही हैं ताजा बनी हुई।

इस एरिया को पैक किया गया है लोहे के जाली से --

जगह काफी सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।